ह किसी कोफ़ी शॉप के बाहर का बहोत ही सुंदर--

ये किसी नदी के ऊपर बनाये गये पूल के ऊपर की बोहोत ही सुन्दर --

यह किसी कोनित के बाहर का फोटो दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर साडी की दूकान में बहोत से व्यक्ति ओरते साडी खरीदने के लिये यहाँ आई हुई है।

होटल या फिर किसी मॉल के बाहर की बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया फोटो दिखाई दे रही है।

जोकि इसी होटल में रुकने के लिये आइ हुई है सायद--

ये वे वो एक बड़े से पेंट्रोल पम्प के बाहर की बात ही बहोत बढ़िया ही बहोत ही सुंदर फोटो दिखाई दे रही है।

यह किसी होटल र्रोम के बाहर का बहुत ही सुन्दर बहुत ही बढ़िया फोटो दिखाई दे रहा है।

अंदर बहोत सारी लाइटे दिखाई दे रही है और बहोत सारे परर्दे दिखाई दे रहे है।

लाईट का कलर ब्लू ही दिखाई दे रहा है।

और टी_वि भी पड़ी हुई है जिसमे पीछे बोहोत बड़ा फर्नीचर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहोत सारी लडकी और लडके टहल रहे है फिर बहोत बड़ा पार्क भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर फियार्ड्स टायर भी पड़े हुए है जोकि बहोत महगे टायर भी मिलते है।

सिर्फ दस बीस से हमको टायर जोकि बोहोत बड़े बड़े टायर भी है यहाँ पर --

ओए रेलवे जेसे फेदिस फोर पर आइ_डी_ए_पि बेहती हो तो यहाँ--

और येलो कलर कि स्लाइड सी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर यह रोड बहोत गंदा नही बहोत ही स्वच्छ भी दिखाई दे रहा है।

क्युकी यहाँ पर सिर्फ फूल पत्ति ही पड़ी हुई है आगे बोहोत सारे लोग भी टहल रहे है।

बहोत ही सुंदर और बहोत ही बढ़िया फोटो दिखाई दे रही है।

केसी भी गाड़ी और के अंदर की बहोत ही सुंदर और बहोत ही बढ़िया फोटो दिखाई दे रहि हे।

ये खाने में इत्ते टेस्टी होंगे कि मैं बता नहीं सकता ये एक फ्राइड राइस कलर वाइट प्लेट में बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है।

ये पार्क बहोत चलते फिरते रोड कि सुबह दिखाई दे रहा है।

बगल मेप बहोत सारी गाडिया भी पड़ी हुई है और उसी के बगल में बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहोत सारी पुफेट और पपी कि टंकी भी दिखाई दे रही है।

यहाँ अगर बहोत सारे जगी के पेंस भी रखे हुए है।

बढ़िया फोटो दिखाई दे रही है जहा पर ये एक बोहोत बड़ी सब्जी मंडी दिखाई दे रही है।

जहाँ पर हमे एक हलवाई कि दूकान दिखाई दे रही है।

घर कि बहुत बड़ी हलवाई कि दूकान है जहाँ पर लड्डू बर्फी आदी--

यह किसी कॉलेज के अंदर के बहुत बड़े फ़ुटबॉल स्टेडियम का बहुत बड़ा फोटो दिखाई दे रहा है ।

पोलिश में बहोत अलग अलग प्रकार का रंगो रखा है।

यहाँ एक स्कूल का काव्या एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जीके यहाँ बोहोत सारे गेट भी लगे हुए है।

निचे बोहोत सारे पेरेंट्स भी खड़े हुए है जो अपने बच्चो को छोड़ क्र जा रहे है कॉलेज में --

मे आई हेल्प यू भी लिखा हुआ है यहां पर ये एक स्टूडेंट भी हो सकता है।

हॉस्पिटल के टायर की कपड़े पेहन रखे है लगता ये होश--

यह तो बहोत ही बड़ा और बहोत ही सुंदर पार्शल दिखाई दे रहा हे।

एकदम बढ़िया सनसेट मेने पहली बार नहीं बोहत बार देख चूका हु जबकि बोहोत ही बढ़िया सनसेट दिखाई दे रह है ।